सड़क की फोटो है और सड़क पे एक एस_टी_डी जैसी दिख रही है।

और वहां साइड में एक छत जैसे दिख रही है जिसके नीचे लोग बैठे हुए हैं।

अलमारी जैसे बनी हुई है जिसको ब्राउन कलर का किया हुआ है उसपे भी कुछ गमले है।

यहाँ पे एक जंगल की फोटो है यहां पे इर्द गिर्द खाली पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बहुत सारे पेड़ है घना जंगल दिख रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट की फोटो लग रही है जहां पे अंदर का टेबल कुर्सियां सजाई हुई है।

और वहाँ जो पिल्लर है खंभे है उन पे कुछ पोस्टर लगाए हुए है और वहाँ पे दीवार पे भी कुछ पोस्टर लगे हुए हैं ब्लू कलर के।

उस पे भी कुछ झाडू जैसा दिख रहा है नीचे टाइल वाइल लगे हुए हैं।

ऊपर इसमें छत भी लगाया हुआ है जो कि तीन का है। आयरन रॉड्स पे खड़ा हुआ है।

और वहां पे स अ आगे कुछ बाल्टी वाल्टी दिख रही है।

आधों ने ब्लू कलर का पहना है आधों ने रेड कलर का पहना हुआ है।

और वहां पे बहोत अच्छी लाइटिंग वगैरा भी की हुई है और सामने एक पेड़ भी दिख रहा जिसपे भी लाइटिंग हुईं है।

एक ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई और उसने धोती पहनी हुई है।

यह एक शॉप की फोटो है जिस पर डी_सी_एम बृजवासी टेक्सटाइल लिखा हुआ है।

एक सड़क पे है वहां से कुछ ट्रक्स भी दिख रही है बहुत सारी ट्रकस दिख रही है।

यहां पर वॉटरफॉल लग रहा है जो की पिकनिक स्पॉट है।

वहां पे आयरन रोड जैसी लगी हुई है और यहां से भी एक खंभा दिख रहा--

यह एक स्विमिंग पूल की फोटो है जिसमें बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं।

और वहां पे शॉपे भी दिख रही है जिनको ऊपर हिंदी में कुछ लिखा गया है।

और वहां पे बोहोत सारे लोग हैं। ये ऊपर से फूलों से डेकोरेट किया हुआ है। ऑरेंज कलर फूल है येलो कलर फुल है।

यहां पे कुछ शॉप जैसी लग रही है जिसके ऊपर बोर्ड चढ़ा हुआ है जिस पे लिखा है गौर व्हील केयर ।

स्केटिंग कर रहे हैं लोग वहां पे और साइड में पेड़ वेड भी हैं।

कमरा है जिसके इर्द गिर्द कुछ परदे लगे हुए हैं क्रीम कलर के।

और वहां पे एक औरत है जिसने रेड कलर की साड़ी जैसे पहनी हुई है।

लड़के की कटिंग हो रही है और साइड में एक लड़का बैठा हुआ है जिसने टाइगर प्रिंट शर्ट पहनी हुई--

और यहां से साइड मे ताजमहल का गेट जैसा दिख रहा हैं।

बीच में कुछ कुआं जैसा है।

और साइड में कुछ बर्तन वर्तन भी दिख रहे है जहां पे एक बंदा खड़ा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है।